और ये गोल्डन मछली दिखाई दे रहा है और ये मछली छोटे-छोटे बड़े-बड़े मछली है और गोल्डन छोटे-छोटे मछली --

में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं इधर एक लेडीज है। अंदर दुकान में एक आदमी खड़ा है बहुत अच्छा सुविधा दिखाई दे रहा है।